टेम्पो है आऊ बिल्डिंग है अच्छे जगह में पेड़ - पौधा है अच्छे जगह लग रहा है अच्छा लग रहा है इसमें--

पेड़-पौधा भी अच्छा हैं ये चड़ रहे हैं उतर रहे हैं बच्चे लोग खेल रहे हैं जगह अच्छा हैं एकदम एक नंबर लग रहा हैं बच्चे लोग भी खेल रहे हैं कूद रहे हैं उतर रहे हैं।